फुल्की वाला भी है अ और बहोत सारी जेंट्स लेडीकल्स भी हैं यहाँ ऊपर आसमान दिख रहा है --

रोड है ऊपर एक पूल बना है जो हाईवे में जाके मिलता है और यहां एक ऑटो खड़ा है एक बोलोरो कार है पीछे एक बस भी आ रही है बहोत सारी लेडीज और जेंट्स खड़े हुए हैं दो लड़के खड़े हुए हैं।

और यहाँ पर बहुत सारे लडके भी खड़े हुए है एक बैनर लगा हुआ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है आजु बाजु पेड़ लगे हुआ है जो बहुत ही ग्रीन ग्रीन है ऊपर आसमान है पूरा वाइट कलर का दिख रहा--

स्टेशनरी की दुकान है यहाँ बहुत सारे कबोर्ड बने हुए है जहा बुके रखी हुई है ऊपर लाइट लगी हुई है सीलिंग का कलर पूरा वाइट है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा ग्राउंड बना हुअ है ग्राउंड के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो येलो कलर की हैजिसमें रेड कलर क पत्ता दिया हुअ है दो लड़के खड़े हुए है यहाँ जिसमें और एक नीली शर्ट पहनी है और एक साइकिल खड़ी है ब्लैक कलर की ।

गाड़ी मे एक जेंट्स बैठा हुआ है जिसने येलो कलर की टी_शर्ट पहना हुआ है घर में एक बैनर लगा हुआ है ब्लू कलर का ऊपर आसमान है जो पूरा स्काईब्लू कलर का है।

बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई में एक लेडी भी खड़ी है जो पिंक कलर की साड़ी पहनी है दो दो जेंट्स हैं एक जेंट्स बाईक में बैठा हुआ है ऊपर आसमान है जो स्काय ब्लू --

मेंन रोड बनी हुई है मैन रोड के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस में गुंबद बनी हुई है और ये यहां पर बहुत सारी घडी भी लगी हुई है जो घंटा घर है यहां एक दादा हैं।